एक बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत सारे खिड़की दरवाजे है दो बैनर्स नजर आ रहे है पक्की सड़क है बहुत सारी गाडिया है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए है सभी पेड़ो को अलग अलग शेप दिया गया है सभी का कलर ग्रीन है।

एक आदमी बैठा हुआ है जिसे हाथ में मोबाइल है एक आदमी साईकिल लेकर अंदर आ रहा है छोटा लोहे का गेट है ।

यह एक रिसर्च रुम का पिक है टायल्स लगे हुए है वाईट एंड ब्रवुन कलर के बहुत सारे टेबल्स रखे हुए है ।

एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर तीन दुकाने है एक दुकान के ऊपर बिहारी लाल चौधरी लिखा हुआ है। एक--

ये एक एम्यूजमेंट पार्क का फोटो है यहाँ पर तालाब में थोडा सा पानी भरा हुआ है शाम का मौसम है बहुत अच्छा लग रहा है।

सामने ब्लैक कलर के बड़े-बड़े स्पीकर रखे हुए हैं जिनके ऊपर गंगा लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं।

इस जमीन के ऊपर ब्रावुन और ऑरेंज कलर का कारपेट बिछा हुआ है सामने बहुत सारे फूलों से डेकोरेशन किया गया है फूलों का कलर पिंक रेड एंड व्हाइट है।

सामने कुछ पत्थर रखे हुए है उन पत्थरों पर एक मंकी बैठा हुआ है जिसका कलर ब्राउन एंड वाईट है और उसके आस पास छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है।